और बहोत सारे पेड़ पोधे लगे हुए है और बादल भी दिख रहे हैं। ई है बोहोत बड़ा मंदिर है और अंदर भी बोहोत बड़ा है।

यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है और पीछे ही बहुत सारे घर बने हुए है जहाँ पर तीन बाइक रखीं हुईं हैं एक बाइक पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहाँ बहोत सारी लाइट लगी हुई हैं और बहोत सारे आदमी भी खड़े हुए हैं। बहोत सारी सीढियां भी बनी हुई। सीढियों पे रेलिंग लगी हुई है। बहोत बड़ी बिल्डिंग है ये।

और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी है पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बोहोत नाईट का समय है बोहोत बड़ा मैदान है |

यहाँ पर आरती बुक सेन्टर लिखा हुआ है यहाँ पर बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं बहुत सारी बाइक रखी हुई है और बहुत सारी लेडीज भी है यहाँ पर।

यहाँ पर बोहोत बड़ा मैदा-मैदान है बोहोत सुंदर लग रहा है यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है।